इस तस्वीर में हमे एक पुराणी एक इमारत दिखाई दे रही है जो की गूफ्हा जैसा लग रहा है जहा एक सीमेंट का पाइप रखा हुआ दिखाई दे रहा है घास दिखाई दे रहे है पत्थर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मे हमे एक ऑटो दिखाई दे रहे है एक घर दिखाई दे रहे है बोट दिखाई दे रहे है खंबा दिखाई दे रहे है खंबा मे होल्डर लगे हुए दिखाई दे रहा है तार दिखाई दे रहे है घर दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर मै हमे एक पुरानी इमारत जैसा दिख दे रहा है उसमे द्वार दिखाई दे रहा है पथरे दिखाई देती है दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है और ईट दिखाई दे रहा है।

जहा दो खुर्सी लगे हुए है दो का काच लगे हुये है बड़े-बड़े लाइट लगे हुये है नीचे मैं टाइल्स लगा हुआ है। ब्लॅक कलर का सीलिंग है।

इस तस्वीर मे हमे एक समुद्र की तस्वीर दिखाई दे रही है जहाँ टापू दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमे एक ए.टी.एम की तस्वीर दिखाई गई है जहा दरवाजे लगे हुए है वो ए_टी_एम का--